यहाँ बहुत बड़ा खंडहर दिखाई दे रहा है > जो बहुत बड़ा है > और उसके ऊपर झाड़ी और दिखाई दे रहा है और उसके बगल में एक खजूर का गाछ भी है।

यहाँ एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में विराट आइस हॉस्पिटल है और यहाँ हम इलाज करवाने जाते है और यहाँ पे एक बहुत एलिसन हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक आदमी दिखाई दे रहा है जो उजला कलर का कपड़ा पहना हुआ है और वो एक--